ऊपर एक आसमान दिखाई दे रहा है व आसमान ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है वहां पे बादल भी दिखाई दे रहे हैं आसपास--

कमरे भी दिखाई दे रहे और खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और नीचे काफी सारे--

और कपड़े एक वाइट कपड़ा का पुतला भी दिख रहा है और ऊपर काफी बड़े झूमर झूमर भी दिख रहा है ऊपर लाइट स्वरू भी दिख रही है।

एक अ केटली भी रखी हुई है और पौधा भी रखा हुआ दिख रहा है।

काला काला हाथ दिख रहा है। उसके नाखून गुलाबी दिख रहे हैं।

काफी सारे मगरमच्छ दिखाई दे है और एक तालाब भी दिखाई दे रहा है और सूखी घास भी दिखाई दे रही है और साइड में दीवाल भी दिखाई दे रही है।

ये कुछ शादी का माहौल दिखाई दे रहा है काफी पीले कपड़े पहने और लाल--

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है और--

पीले रंग का दरवाजा दिख रहा है और कांच का सीसा भी दिख रहा है।

हरा और सफेद रंग दिख रहा है ऊपर आसमान भी दिख रहा है आसमान में काफी सारे बादल भी दिख रहे।

यहां पे दो तीन मकान दिख रहे हैं मकान में खिड़की खिड़कियां दिख रही है खिड़कियां कांच की दिखाई दे रही है।

और एक डिनर भी लगा हुआ दिख रहा है और पा--

कुछ लोगों ने सफेद कपड़े भी पहने हुए हैं ऊपर हल्का सा आसमान भी दिखाई दे रहा है।

पौधे दिखाई दे रे है और वेल भी दिखाई दे रही है पौधों में।

यहां पे कुछ लोग दिखा दे रहे हैं जो प्राथना करते हुए लग रहे हैं सामने--

बेबी भी दिखाई दे रहे है एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो कॉफी के कप दिखाई दे रहे हैं अंदर कॉफी भरी हुई दिखाई दे रही है एक चम्मच कॉफी के अंदर दिखाई दे रही है एक चम्मच बाहर दिखाई दे रही है दो--

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधे--

एक कारपेट भी दिखाई दे रही है जो हरे रंग की दिखाई दे रही है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और पत्रें भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहां पे पानी पाते--

और एक ब दो पंखे भी दिखाई दे रहे हैं और बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पैकेज ब और भी दिखाई दे रहे है और--

और वॉकिंग करने की मशीन भी दिखाई दे रही है काफी सारी लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

ब्लू ल रंग का दिखाई दे रहा एक हरे रंग का दिखाई दे रहा है।